यहां पे पूजा अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं

ये शादी का मण्डप है यहां बहुत सारी फुलों से रंग कपड़े से सजावट कर रखें हैं जो भी आगे यहां बैठेगा शादी का प्रोग्राम देखने के लिए कि ये सजावट कर रखा है।